अरे बाप रे बाप कितना सुंदर लागता इ देखा तरु कितना अअ कितना अच्छा लग रहा है मत पूछिए यहाँ पर लग रहा है की--

इतना अच्छा इनका डिजाइन बनाने का तरीका है कितना अच्छा कुछ भी कहिए भैया बहुत अच्छा तरीका है आपका--

फिर लेता है कहीं भी चल जाता है बताइए आप हाथ में बहुत जादू है भैया मत पूछिय इतना जादू कहां से लाये आपने हमको तो नहीं मालूम लेकिन --

जो भी है भैया इतना अच्छा काम किए है आपने की मत पूछिय बहुत सुंदर काम किय है आपका बहुत लाख शुक्र बहुत लाख --

नहीं ये पौधा नहीं है सॉरी वहां ऊपर देखिए कितना अच्छा झील है वो ऊपर ऊपर जाने वाला है।

उन से दुआ मांगो दया करो भगवान देवता पिता सबको दया रखें हमको भी रखे बहुत अच्छा चीज है जो भी है देखने के लायक है बहुत चीजे बढ़िया है बहुत अच्छा है।

उधर भी है दीप जल रहा है और बा बॉन जल रहा है ये सब जल रहा है यहां पर हरा - हरा पेड़ दिख रहा है इतना सुंदर लग रहा है मत पूछिए बहुत अच्छा --

इतना अच्छा लग रहा है कितना सुंदर वाह आज कितना झकास है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है वाह कितना अच्छा लग रहा है देखिए न कितना सुंदर लग रहा है।

लेकिन क्या है यह नहीं देख रहा है क्या कितना अच्छा पेट्रोल पंप है देख लीजिएगा कितना मस्त है इसका क्वालिटी देखिए कितना मस्त लग रहा है पेट्रोल पंप के--

कीड़ा है शिमला मिर्च है भिंडी है शकरकंद है गाजल है है बैगन है कुंदरी है।

और ये कितना हरा है हरा-हरा सा सब दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है ये चीज भी दिख रहा है हमको तो यह भी बहुत मस्त --

यहां पे एक ठो घर है जो ब्लू कलर का गेट है एक का ब्लू कलर का नीला कलर का गेट है उधर भी घर बन रखा है यश्वी का डिज़ाइन भी बना हुआ है उधर भी।

माँ सम्मान होती है टीचर कितना अच्छा प्यारी मां जैसी है देखो कितने अच्छे से पढा रही है बच्चे लोग को।

अरे वाह इसको स्क्रीनशॉट करने दो रुको -रुको बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यार स्क्रीन शॉट ले ले।